जोकि यहाॅं पर अंदर जाने को रोकते हैं।

आलीशान गेट भी दिखाई दे रहा है।

और ऊपर की ओर यहाँ पर सामने--

अगल बगल में बहोत सुंदर सुंदर--

ब्ल्यू और व्हाइट कलर की चुन्नियों से बहोत ही शानदार तरीके से डेकोरेशन --

मैं आपको बताना चाहती हूं यह किसी बार की पि--

शीशे भी दिख रहे हैं और यहां पर--

जोकि इन महिलाओं को देख रहे हैं।

मुझे ये पिक देखकर लगता है कि यहां पर--

यहां पर ऊपर एक लाइट का लैंप भी नजर आ रहा है।

जहां पर एक टी_वी और एक शिशॉ और बेड दो कुर्सियां नजर आ रही है।

यह पिक ओ_टी चंडीगढ़ के नाम से किसी जगह की ली गई है।